इस फोटो में मुझे कुछ ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे पानी का जग और ग्लास दिखाई दे रहा है।

हॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे चारों तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कार दिखाई दे रहा--

ये फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे फुग्गों की सजावट दिखाई दे रही है।

ए फोटो में मुझे घर दिखाई दे रहा है।

एक फोटो में मुझे प्लग दिखाई दे रही है।

फोटो में मुझे कुर्सी टेबल दिखाई दे रही है।